और यहाँ पे लोग घूमने आये हैं | स्नान करने जगह पानी है | सब स्नान भी कर रहे हैं | चारो तरफ पेड़ पौधे हरे भरे हैं और एक सड़क टाइप का बना है |

बाराती जा रहा है हो सकता है दूल्हे का गाड़ी सजाया जैसा दिख रहा है और इसमें कई तरह के फूल से सजाया गया है फूल बहोत कलर फूल लग रहा है गेंदा का फूल भी लगा हुआ है इसमें और पीला पट्टी है इसमें --